गिटार हैं ढोलक वगैरा सब रखा हुआ है।

और बाहर की तरफ हैलोजन रखे हुए तीन बाहर --

एक राइट साइड में रखा हुआ बाकी लेफ्ट साइड में।

और साइड में एक फ्रीजर रखा हुआ है आइसक्रीम्स रखने वाला एक पंखा लगा है।

और राइट साइड में थोड़ा सा छोटे पेड़ लगे है।

रोड के बिल्कुल बराबर में एक बिजली वाला खंभा लगा है लाइट के लिए।

और बाहर खूब सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

लाइट्स हैलोजन दिख रही है।

जिससे ऑपरेशन सर्जरी की जाती है।

डिजाइन से कटिंग हुई है पेड़ की।

पेन जिससे ब्रिज वगैरा बनाया जाता है।

और सामने एक बहोत बड़ी सी मछली रखी हुई है।

और साइड में एक लेडीज और एक जेंट्स खड़े बैठे हुए है।

बीच में रोड है और ये दोनो साइड गार्डन है और पीछे झाड़ियां दिख रही है।

गार्डन में पेड़ है पौधे लगे हुए हैं फूल है उसेपे रेड कलर का।

जिसके बगल में एक छोटी सी रोड है।